इस फोटो में मुझे बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस फोटो में पेट्रोल पंप का शौचालय दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे कुछ कैरम बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ चित्रकला दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ लाइट की डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक पर्दा दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे एक कार दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ये खेत दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे एक डब्बा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं।